यह ब्रिज के ऊपर कई सारे आदमी जा रहे है ।

यहाँ पर एक छत ढलाई हो रहा है जहाँ पर कुछ लेबर काम कर रहे है ।

जो इसमें डूबना था पर रहे है और --